और यहां मेज भी रखा हुआ मेज पे बहुत सारे कवर में सामान रखा हुआ है और--

यहां कुर्सियां भी रखी हुए हैं और यहां पे बहुत सारी लाइट भी लगी है दीवालों में--

सामने में देख पा रही हूं कि अ बड़ा सा होटल है और होटल के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है अंकित--

और कुर्सियां भी रखी हुई है अंदर बैठने वाला बना हुआ है और होटल के बाहर रोड है रोड के किनारे बहुत सारी बाइक आना जाना कर रहे--

और बाहर बहुत सारे बाइक और चार पहिए खड़े किए गए हैं और रोड पे--

और एक आदमी है जो बाइक रख रहा है इस साइड भी बहुत सारे बाइक खड़े किए गए हैं।

आ सीमेंट की बनी हुई है और यहां दीवाल भी टाइल्स लगे हुए हैं दीवालों पर और एक बड़ा सा--

खिड़की है जो कि बंद है और यहां पे साइड वाले दीवाल पे परदे लगे हुए हैं रेड कलर के।

सामने रोड है रोड के किनारे एक बड़ा सा जंगल है वहां पे बड़ा सा बाहर पोस्टर लगा हुआ है और--

शाम का समय है यहां पे एं सूर्य डूबते हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ कला-कला अंधेरा टाइप का हो रहा है।

और इस दुकान में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं और नीचे फर्श भी टाइल्स के लगे हुए हैं यह शोरूम बहुत ही बड़ा है।

बड़ा सा लैब है यहां पे काफी लोग आते हैं रुकते हैं और यहां पे होटल भी है और रूम भी देते हैं।

और पत्थरों के बीच में पानी बहती हुई नजर आ रही है नि ऊपर से नीचे की तरफ बहती हुई जा रही है।

और आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि घना जंगल जैसा भी दिख रहा है आसपास--

और ये जो बड़े-बड़े पत्थर है उसके अंदर भी घास निकल गए हैं और छोटे-छोटे पेड़ भी निकल गए हैं।

शर्ट रखे हुए है बहोत सारे साइज के है और जींस भी है और पैंट भी है और लोअर भी है बहोत तरह-तरह के रखे गए है।

बड़ा सा म्यूजियम है म्यूजियम के अंदर काफी पुरानी पुरानी चीजों को अच्छे से रखा गया है शीशे के अंदर--

और अगल बगल में ऐसे ही छोटे-छोटे मूर्तियां रखी गई हैं पहले के और पत्थरों के यहां सब--

और बड़ा सा दुकान है दुकान में काफी सामान रखा हुआ है और दुकान के सामने बीच में--

बहोत बड़ा मंदिर है और मंदिर के ऊपर बहोत बड़े बड़े मतलब डिजाइन बनाया गया है जो की बहोत ही सुंदर लग रहा हैं और--

पीछे बहुत जंगल दिख रहा है और बहुत ही सुंदर कटिंग हुई है और रोड के किनारे छोटे-छोटे--

और रोड के किनारे किनारे काफी बड़े बड़े घर दुकान और एक कोचिंग सेंटर है जहां काफी भीड़ है और सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं।

सामने चर्च है और चर्च में एक लेडी है जो की किनारे खड़ी हो के माइक में यहां पर भाषण दे रही है।

और यहां प्रवचन भी दे रही है और बीच में मंदिर के कुर्सी लगा हुआ है कुर्सी के पीछे कृष्ण जी का मूर्ति लगा हुआ है।

और सामने काफी लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग फोटो खींच रहे वीडियो बना रहे हैं और दिन का समय है लाइट व्हाइट लगा हुआ है।

अगल बगल में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी हैं और बाहर बाइक रखी हुई है।

और साइकिल भी खड़े हैं बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है बाहर और रोड के किनारे एक बड़ा सा दुकान है जिसे बहुत ही सुंदर सजाया गया है।

गब्बरों से और कपड़ों से टेंट लगा हुआ है बाहर कारपेट भी बिछाय गए हैं।

बड़ा सा मॉल बन रहा है मॉल के बाहर काम चल रहा है और ऊपर तक बांस बंधे हुए हैं बड़े-बड़े बांस बंधे हुए हैं और--

ये आने जाने कर रहे हैं एक औरत है जो साड़ी पहन के जा रही है बगल में भी दुकान दिख रही है दोपहर का समय है धूप निकली है।

सामने चर्च है और चर्च में एक बीच में राजा बन के बैठे हुए हैं और किनारे किनारे दो लोग बैठे हैं।

किनारे किनारे चारों तरफ दीवाल चली गई है और घेर लिया गया है ग्राउंड को ग्राउंड के बाहर बड़े-बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं।

सामने में देख पा रही हूं कि एक कमरा है और कमरे में टी_वी लगी हुई है जो कि चल रही है टी _वी और पास में मतलब टी _वी के आगे--

बहुत सारी कुर्सियां लगाई गई हैं और इस कमरे में दीवालों पर बड़े-बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं।

है वहां पर्दा लगा हुआ है और इस रूम में बड़े-बड़े मशीन भी लगे हुए हैं।

बड़ा सा बिल्डिंग है‌ और बिल्डिंग के बलकनी का फोटो लिया गया और बलकनी में बहुत सारे गमले--

फोन रखे हुए हैं अलग अलग कंपनी के रखे हुए हैं और दुकान के बाहर बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और घना जंगल है यहां पे और पत्थरों के बीच में भी घास वास निकल गए हैं।

और बहुत छोटे-छोटे भी पत्थर दिख रहे हैं जो कि पानी के अंदर है।

बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उसके अंदर पानी नीला नीला दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है और अगल बगल में--

बहुत बड़े पेड़ दिख रहे हैं और छोटे-छोटे भी पेड़ लगाए गए हैं और इसे--

बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रही हैं और इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी है।

और ये ऐ रोड के किनारे लगाए गए बहुत ही सुंदर लग रहा है और सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग है और--

सामने स्टेज बना हुआ है और कुछ बच्चे और बच्चियां है जोकि प्रोग्राम कि दिखा रही है और डां--

कर रहे हैं दो लड़के पीछे हैं दो लड़के आगे हैं जो कि दोनों लड़कियां--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

बहुत बड़ी मार्केट है और मार्केट के अंदर बहोत सारी सब्जी वाले सब्जी लगाए जो नीचे बैठ के सब्जियां बेच रही है।

और एक आंटी है जो बेच रही है और एक आंटी है जो कि मुंह में--

मास्क लगा के मार्केट कर रही है और अगल बगल में बहुत बड़े बड़े दुकान भी है राशन की दुकानें है।